और बीच में एक रास्ता है और बगल में एक कुर्सी लगा हुआ है और एक बाइक भी है और ये बिद्यालय रंग कर --

ये दरजी का दुकान है। यहाँ पे कपड़ा सिलता है और ऊपर में भी --

और एक ऊपर में पोस्टर भी है। एक पोस्टर लगा हुआ है और नीचे में कपड़ा सब है और नीचे में भी कपड़ा सब है।

म्मम और ऊपर में फैन सब है नीचे में भी बाल्टी सब है टॉवल सब है गंजी सब है।

और ऊपर में लाइट भी लगा हुआ है। सी.सी. कैमरा भी लगा हुआ है। ऊपर में बहुत सारा डिजाइन भी है।

ऊपर मे टाइल्स टाइल्स लगा हुआ है। बोहोत सुंदर है दिखने मे। पारक की तरफ लगता ह ऊपर में पारक की तरह भी है यहाँ पे और एक पेड़ भी है |

खटखटिया भी है। एक बाइक भी है रुका हुआ एक बाइक आ रहा है और टोटो टोटो सब जा रहा है एक पोला है।